यह अमरूद बहुत ही अच्छी लग रही है और यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी सी घास भी उगाई है।

यह एक शोरूम है शोरूम के अंदर बहुत सारे लेडिस वाले कपड़े टंगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे जेंट्स खड़े हुए हैं और कुछ लेडिस भी दिखाई पड़ रही है।

ट्रैक्टर स्वराज सात सौ पैंतीस लिखा हुआ है एफ_ई ।

यहां पे बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है और आसपास भी घर दिखाई बने हुए पड़ रहे है।